आगे में पिंक कलर का बड़ा सा गेट है दो साइड के जहां अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है साइड में दो बाइक लगे हुए है।

ए इलेक्ट्रॉनिक समान सब है एक बगल डोर में तीन पंखे रखे हुए हैं।

और अन्दर कुछ आदमी पूजा कर रहे हैं।